और खूबसूरती में एक मिशाल है क्यूंकि इतने बड़े खूबसूरत महल को बनाने में बड़ी मेंहनत लगी होगी और इस महल की खूबसूरती बहोत ही प्यारी लग रही है। ये बहोत ही ज्यादा --

खूबसूरत इ रिक्शा खड़ा है और ये बिल्कुल न्यू इ रिक्शा है क्योंकि ये सेल --

ये एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है और ये बिल्डिंग काफी खूबसूरत भी है और यहाँ पर काफी खूबसूरती के साथ-साथ ही बैंक भी है।